और यहां पर चारों साइड रोड भी दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट का डायनिंग एरिया दिखाई दे रहा है।

जहां पर एक घर में तीन खिड़कियां भी नजर आ रही हैं जोकि कांच से बनी हुई हैं औ --

और यहां पर एक टी_वी भी लगी हुई है उसका रिमोट बेड के ऊपर रखा हुआ है।

यहां पर दो लोग खड़े होकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं।

यह तस्वीर किसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन की नजर आ रही है।

यहां पर अगल बगल कोई कुछ और चीज दिखाई नहीं दे रही हैं।

यह तस्वीर हमें किसी आयुर्वेदा की दुकान की नजर आ रही है।

यह चित्र हमे एक गीता आयुर्वेद के नाम से दिखाई दे रहा--

और तीन चार प्रकार की और गाड़ियां दिखाई दे रहीं--